यह एक रोड है जिस पर बहुत सारी ई रिक्शा यात्री को लेने के लिए आ रही है।

रूम में एक छत का पंखा और एक ए_सी भी लगी हुई है बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है।

साइड में जो दुकान है सी_आई_आई_टी डिजिटल मार्केटिंग का भी दुकान यहां पर है जो बोर्ड पर लिखा है।

जो गेट हैं कांच के शीशे लगे हुए हैं उनपर--

और एक स्टेबलाइजेश पर कपड़ा रखा और मोमबत्ती जल रही है।

और एक बस्ती बसी हुई है यहां पर जहां बहुत सारे तार है एक ट्रांसफार्मर है।

और यह हरी मैट पर है जिनके नीचे किताबें रखी हुई हैं।

और एक स्पीकर रखा हुआ है जिस पर माइक और साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं एक घर भी है पीछे।

और बाहर हनुमान जी की तस्वीर भी है।

बहोत अच्छे से सजाई गई है दुकान चिप्स के पैकेट और बहोत सारा सामान रखा हुआ है फ्रिज में बोतल रखी है ठंडे की।

और कुछ तकिए भी रखे हुए हैं जो बेडशीट बनाई गई है। गोल स्टूल भी है।

और उसमें ड्रिल मशीन कटर और कुछ सामान वेल्डिंग करने का भी रखा हुआ है जो बाक्सों के अंदर है।

यहां पर बाहर बोर्ड पर एक कार उतर रखी है और साइड में भी एक टीन के मकान से में एक कार खड़ी है।

कांटा भी रखा हुआ है और उसके पास उसके पैसे भी रखे हुए हैं।

और एक कॉन्ट रखा हुआ है जिस पर पीला कलर हुआ है और उसे पर लिखा हुआ है हिमालया।

और उसमें गत्ते के बॉक्स रखे हैं जिनमें समान है।

और एक ट्यूबलाइट भी लगी हुई है और एक छोटा बच्चो का है।

और एक आदमी अपनी दाढ़ी बनवा रहा है नाई से।

इसमें बहुत मूर्तियां भी रखी हुई है एक एल_इ_डी भी लगी हुई है।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

जीसमें खंबा है उस पे तार भी दिखाई दे रहे हैं।